यह इसका आर्ट रेड और वाइट ब्लैक से भरा हुआ है।

यह पूरा भी पिंक और ब्लैक में भरा हुआ है अ तफरा --

जिसके बाह्यर एक आदमी खड़ा है और--

आउटलाइन कराया है और ब्लू में सैलून लिखकर हुआ --

--और वहाँ पे कई ईटे बालू पत्थर --

यहाँ हम देख सकते है बीच--